दिख रहा है पेड़ पे पत्ते है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर आसमान दिख रहा है वो व्हाइट कलर का है यहाँ पर एक पोल दिख रहा है उस पे तार लगा हुआ है यहाँ पर एक दिवाल दिख रही है।

यहाँ पे जो जमीन है उसे पर येलो कलर से कुछ निशाना बनाए गए है इस चिन्ह कहते है और यहाँ पर बहुत सारी मशीन रखी हुई है।

उस सीढ़ी मे एडी रेलिंग लगा हुआ है और जो स्टील का है।

एरिया है जहाँ पर बहुत सारी मशीनें रखी हुई है हर मशीन का कलर ब्लैक रंग का है यहाँ पर एक आया लाइट जो का यूज़ किया गया है वह व्हाइट रंग का है और यहाँ पर जो दीवाल का कलर है वह आसमानी कलर है यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है।

इजमे रोड दिख रहा है और रोड के बगल में मिट्टी दिख रही है और यहाँ पर लोहे अ लोहा का छड़ दिख रहा है और यहाँ पर एक लोहे का पोल भी दिख रहा है यहाँ पर पेड़ दिख रहा है।

गाड़ी है और ए दोनो ही गाड़ी का कलर वाइट कलर का है एक गाड़ी जो है वो पुरी दिख रही है और एक गाड़ी का आगह का ही भाग दिख रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति है।